वहाँ पे एक किताब रखी हुई है कैची रखी हुई है एक महिला है जिसने चश्मा लगाया है और जिसने वाइट कलर कि ड्रेस पहनी है वो इन सब को देख रही है । यहाँ पर --

यहाँ पे ऑटो खड़े हुए हैं। एक खुला हुआ यहाँ पे मैदान है। ऑटो का कलर ब्लैक और येलो है। यहाँ पे दो लड़के बैठे हुए हैं। एक लड़का उसमें मोबाइल चला रहा है। उन्होंने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हैं।

यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े शिलाएं हैं पत्थरें हैं और यहाँ पे पुरुष व महिलायें हैं। जो लड़के हैं उन्होंने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हैं। एक लड़का है जिसने बनियान पहनी है ब्लैक और ब्लू कलर --

यहाँ पर शाम का वक्त है और यहाँ पे एक बड़ा प्ले ग्राउंड है। जहाँ पे लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं। सभी लड़कों ने अलग-अलग रंग के कपड़े पहने हैं।

यहाँ पर एक पक्की सड़क है यहाँ पर एक महिला नज़र आ रही है जो कि रोड पर चल रही है एक लड़का है जो कि साइकिल चला रहा है यहाँ पर दो भैस नज़र आ रही हैं जो कि ब्लैक कलर की हैं ।

गुब्बारे यलो व रेड कलर के हैं और यहाँ पर बहोत सारी लाइटिंग है ।